उसके पीछे एक सफेद कलर की कार खड़ी--

कुर्सियों पर बैठे हुए दिख रहे हैं रात का समय है लाइट लग रही है पीछे--

उनके परिवार वाले बैठे हैं पीछे सफेद पर्दे और फूलों से डेकोरेशन किया हुआ है।

डांस एक्शन करते हुए दिख रही है।

हरे हरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

और पहाड़ों के पत्थरों के बीच में से दो आदमी अह सेल्फी खिंचाए ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

अह आदमी ने अपना हाथ बाहर निकाला हुआ है हँसता हुआ दिखाई दे रहा है इसका चेहरा।

पौधों को पानी को पिलाते हुए दिख रही है।

इस पिक्चर में सामने ही दो सफेद कलर की कार खड़ी है।

उम्म ऊपर बहुत सारी बाइक्स पार्क की हुई है।